ऊपर शेड भी डला हुआ है शेड में कुछ लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक क्लीनिक का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है दुकान के ऊपर कुछ फूलों की मलाई भी लटकी हुई दिख रही है।

इस चित्र में एक फाैवारा दिख रहा है तो बारे में कुछ लाइट लगी हुई है आसपास कुछ पेड़ और पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्रमें कुछ बकरियां दिखाई दे रही है बकरियां चारा खाती हुई दिख रही हैं।

इस चित्र मे इसी जगह पर कुछ महिलाए लाइन लगाके खड़ी हुई कतार मे दिख रही है।